इस इमेज में हम एक ऑटो सेंटर का फोटो देख रहे जहा पे एक टी_वी_एस सेक्शन क--

डांस फंक्शन का इमेज देखने को मिल रहा है जिसमें काफी सारी लड़कियां रंग बिरंगे पोशाक पे--

एक झंडा ले के व्हाइट कलर का शर्ट पहिन के लड़कियों के पीछे में खड़े हुए स्टेज ये हरे कलर के दिख रहा है जो नीचे का फर्श और पीछे ब्लू कलर हैं।

ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं और एक बच्चे जो सामने में मेन कंपास बॉक्स और कुछ पेज लेकर यहां कुछ--

इस तस्वीर में हमें लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी का डांस --

और यहां पे जो हाउस है इसमें एक दो तीन चार पांच छै--

बहोत सारे शॉपिंग हो गए यहां पे ये देखिए यहां पे एक है--

इस इमेज में हमें किसी मंदिर का सीढ़ी दिखाई दे रहे है जहां से सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ऊपर जाते है।

यहां पे हमें एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है यहां पे एक कैमरा भी लगा हुआ है जो लाइट की वजह से ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन वह कैमरा ही है।

फ्यूल स्टेशन का नाम ही हैं यह पेट्रोल टंकी भारत पेट्रोल टंकी पेट्रोलियम हैं।

रेड कलर की टी-शर्ट पहने हुए एक साइकल सवार व्यक्ति है जो साईकल में कुछ समान रखे हुए है उसको निकलते हुए__

वगैरा भी खड़े हुए हैं शॉप अभी पुरानी है यहां पे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है बगल में।

यह हमें एक झील का इमेज दिखाई दे रहा है यहाॅं पे दो बंदे--

थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बगल में चिप्स और कुरकुरे भी लटका हुआ है यहाँ पे एक कार्टून रखा हुआ हैं।